एक बड़ा सा पार्क दिख रहा है उसमें घास लगी हुई है झूले भी लगे हुए हैं बहुत ही बड़ा पार्क है।

यहां पर पानी है दो लड़के खड़े हुए हैं और पीछे साइड पानी दिख रहा है नाव चल रही है।

यहा पर एक जेन्टस है जो की बंदूक रखे कुछ खोज़ रहा है।

डांस प्रैक्टिस स्कूल बहुत ही अच्छा दिख रहा है और उसके यहाँ बैंक भी है केनरा बैंक केयर बैंक है।

यहां पर बोहोत ही बड़े-बड़े पहाड़ हैं जिन पर खड़े होकर बहुत से लोगों ने फोटो खिंचवाई है।

यहाँ पर अ बहुत एक सेल्फी खिंचवाई गई है यह कैफ है एक यह कैफे का नाम द सिटी है यहाँ पर--